आस पास हमें बहुत सारे वृक्ष भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है।

जिसके पास एक आदमी खड़ा होकर अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है।

यह दृश्य हमें किसी परफॉर्मेंस का दिखाई दे रहा है।

उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी हुई हैं।

शॉप में हमें एक पंखा भी रखा हुआ नजर आ रहा हैं।

उसके पास हमें बहुत सारी चेयर्स भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य में यहां एक बहोत सुंदर छोटी छोटी--

डीजों के साइट पर हमें बहौत सारे स्पीकर्स --

इस दृश्य में हमें एक समुद्र दिख रहा है।

बड़ी-बड़ी बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें हमें दो बड़ी-बड़ी मूर्तियां भी नज़र आ रही हैं।

ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में हमें एक पार्क बना हुआ नजर आ रहा है।

यह दृश्य हमे किसी चर्च का दिखाया जा रहा है।

उपर हमें बहोत सारी लाइट्स भी लगी हुई हैं।

यह हमें रात का दृश्य दिखाया जा रहा हैं।

हमें कोई भी व्हीकल नजर नहीं आ रहा--

उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं।

यह दृश्य हमें किसी फंक्शन का लग रहा है।

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।